आ छड़ लेकर के खड़े है और पाइप यहाँ पे दिखाई दे रहा है छड़ बंधे हुए हैं बहुत लोग सर पर समान लिए हुए गिट्टी बालू --

यहां पे टेंपल दिखाई दे रहे छोटे-छोटे बल्ब दिखाई दे रहे है गेट है जो व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है गेट के सामने फूल का माला अ अ--से बनाया फूल का माला गेट के सामने लगाया हुआ है उसके पीछे छोटे-छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है।

बैंक ए बैंक ऑफ बी.ओ.आई. बैंक ऑफ इंडिया यानी बैंक ऑफ इंडिया वाइट कलर से लिखा हुआ हैं ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है और नीचे जो है वो लाइट ऑफ है उम ये नीचे पक्का दिख --

और बहुत बच्चे लोग टोपी लगा कर के बैठे हुए और बच्चियाँ लोग हिज़ाब लगा कर के बैठी हुई है।

ये स्टेट बैंक ए.टी.एम. है इसका भी शटर गिरा हुआ है।

एक आदमी है पिंक कलर का और जींस ब्लू कलर का पहन कर खड़ा है बाइक दिख रहे हैं बाइक पे कपड़े उर ढके हुए है बगल में टूल दिख रहा है एक झोपड़ी सा दिख रहा है ऊपर मकान दिख रहा है ईट का मकान।

और दूसरे साइड में भी लोग आपस में कतार में खड़े हैं गणपति बप्पा जी हाथ में और चक्र लिए हुए हैं कमल लिए हुए हैं शंख लिए हुए हैं वर्णमाला पहने हुए हैं।

ये एक बुक सेंटर है आरती बुक सेंटर के नाम से ये दुकान का नाम है और बाहर में बहुत सारे भीड़ लगी हुई है। ये बुका ये उम यहाँ पे बाइकें लगी हुई हैं।

यहां पर रेक्स टेलर्स दिख रहा है जो टेलर का दुकान है फिर कपड़ा का दुकान दिख रहा है फिर ऊपर में शायद ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैंक का हो।

एस.बी.आई. ए.टी.एम. के सामने एक और आदमी ब्लैक कलर का जैकेट पहिन कर खड़ा है ऊपर-ऊपर काफी अच्छा घर दिख रहा है उसके घर के सामने पेड़ दिख रहा है ऊपर मे और तार --